रोड दिख रहा है गाड़ी है एक बाइक भी है।

दो लोगों का चेहरा ब्लर किया हुआ है दो लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है।

अंदर जाने के लिए दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है।

लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट बंद है और राइट साइड का खुला हुआ है।

बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है जो कि शायद टेबल टेनिस हॉल है।

सीढ़ी दिख रहा है यहां पर दरवाजा खुला हुआ है।

खिड़की दिख रहा उसके आर पार लोग भी दिख रहा है।

यहां तो चार में ब्लू स्टीकर है दो में कुछ और है।

बड़ा सा पिक्चर दिख रहा है इसके ऊपर लाइट है।

एक साइड में भी दीवार में ब्लैक से कुछ है।

ऊपर पे टाटा लिखा हुआ है ऊपर पे लाइट्स भी दिख रहा है।

अंदर में कुछ लोग भी दिख रहा है।

कार का दरवाजा खुला हुआ है इसके लॉकर्स भी दिख रहे हैं।

और एक टेबल अह टेबल भी है साइड में भी टेबल और चेयर रखा हुआ है।

आदमी झाड़ू मारे पीछे और साइड में कुछ आदमी देख रहे हैं।

ये छेरा में प्यार किया हुआ है।

बॉक्स भी दिख रहा है यहां पर।

ऊपर पे टॉपिक घड़ी जैसा कुछ शायद फैशन के लिए लगाया है।

यहां एक आदमी दिख रहा हैं एक मशीन है।

शायद गाड़ी के कुछ आयल्स भी है।

राइट साइड में ब्लैक कलर का चार बोतल दिख रहा है।

फैन दिख रहा है और लाइट्स भी दिख रहा है।